साइड में भी एक बोलोरो खड़ी है उसके साइड मे एक और कार खड़ी है चार पाँच पेड़ खड़े हैं।

सामने घर दिखाई दे रहा है घर के पास बेनर लगा हुआ है। एक बड़ा सा गेट है वहाँ पर बीस पच्चीस मोटरसाइकिल खड़ी है।